इसमें दो चेयर लगाई हुई है और इसमें तीन बड़े-बड़े शीशे लगाए हुए हैं।

और रैक के नीचे बहोत सारी लाइटे लगाई हुई है।

जो की दुकानों के बाहर बैठे किसी चीज के बारे में निरीक्षण कर रहे हैं।

ये फोटो बीकानेर के एक सुंदर पार्क की है।

चारों तरफ धुंधकार फैला हुआ है।

और साथ ही में सपोर्ट के लिए लोह की तारें भी बिछा रहे हैं।

जिसमें एक व्यक्ति ने सफेद कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहन रखा है।